एक पर्दा दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे शीशे की खिड़कियां दिखाई दे रही है।

सामने खेल खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है गुड्डा दिख रहा है।

यहां पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है।

पीछे खंभे दिखाई दे रहे है तारे दिख रही है।

यहां पर एक आदमी पानी पी रहा है।